यह एक भाई साहब हाथी पर बैठे हुए हाथी है दिखने में जो बहोत बढ़िया लगता है यहाँ पे देखिए भाई कितने ऊंचे पर खड़े हुए है एक अ बांस हाथ में एक रखे हुऐ हैं ए --

यहाँ पे देखिये एक मेमसाब है और देखे उम् तीन मेमसाब है देखने में खूबसूरत है एक बैग लटकाए हुए बहुत उम बहुत बच्चे देखिये यहाँ पे हुं लिखा एक ठो पुस्तक देख रहा है तीन ठो देख रहा है मेमसाब को।

एते देखिए काफी हरिण हैं देखने में बहुत खूबसूरत हैं ढ़ेर सारा हरिण हैं और एक पेड़ का पेड़ के पास हरिण हैं और सब हरिण खेल रहें हैं और --

ये एक स्कूटी भी इधर है देखने में बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे बहुत बढ़िया घर है और एकठो बगल में एक मंजिला भी घर है।